व्हाइट एंड पिंक कलर की बैलूनस हैं । यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विहकल की शॉप भी है उसके बगल में भवानी स्टोर है । अ --

सीढ़ियां ज है ऊपर जाने के लिए।

ये पैर पोछने वाले मैट है यहाँ पे रंग-बिरंगी मैट है।

अअअ गुलाबी कलर की दीवारें है पी-पीछे सोफा के एक क्रीम कलर का सोफा भी रखा हुआ है।

और ठीक पीछे गाय के रेत लगी हुई अ पड़ी हुई है बहुत सारी।

चित्र मे हम देख सकते है कि आसमान एकदम नीला है और एकदम साफ है पानी का एक समुंद्र है।

अ लाल ओर सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है यह पर दो ओरते है जो बगीचे मे काम भी कर रही है ओर सामने से एक सफेद कलर की गाड़ी भी आ रही है ।

ए.टि.एम. में अ एक बगल में लाल कलर का दीवार है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है एक कचरे का डब्बा है और मनीष स्पॉट ए.टि.एम का नाम--